ये एक जिम का वीडियो है यहां पर चारों तरफ हरे-हरे पेड़ हैं।

एक व्यक्ति ने नीले रंग की धोती और कुर्ता पहन रखा है।

काउंटर पर एक लैपटॉप रखा हुआ है पास में ही दो प्लास्टिक की बोतले रखी हुई है लाल और हरे रंग की --

लाल रंग के स्कर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर की टी शर्ट --

स्कूल कि दिवारें क्रीम कलर की है जो दरवाजे हैं वो हरे रंग के हैं।

सामने के तरफ कुछ गमले है उनमें कुछ हरे पेड़ लगे हुए है।

इन बाईकों के हैंडल पर हेलमेट लटके हुएं हैं।

जो मंजिल के लाल रंग की बिल्डिंग है बिल्डिंग के बाहर अंदर जाने का रास्ता भी है और दोनों तरफ दो--

रंग बिरंगे फूल मिल रहे हैं लोगो ने कमर मे पट्टा बांध रखा है।

दूसरी तरफ एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले रंग का कोट पहना हुआ है।

उसके पीछे एक ब्लैक बोर्ड रखा है दीवाल पर एक ए_सी लगा हुआ है।